इस तस्वीर को देख के ये अनुमान लगाया जा रहा है की एक स्टेज है जिस पे एक महिला मौजूद है जो काफी सम्मान दे रही है छोटी-छोटी बच्चियों को।

और उसके सामने कुछ मशीने भी रखी हुयी है और बाए तरफ दीवार में एक बोर्ड जैसा है और नीचे की तरफ भी चीर है।

और उसके बाईं तरफ भी कुछ गाड़ी रखी हुई है और सामने मे एक बहुत लंबा जैसा खंभा भी मौजूद है।